इस ग्राउंड में अ कुछ लाइने बनी हुई हैं जो कि किसी खेल क्षेत्र की है।

सामने एक सीडी नजर आ रही है जो ब्लैक कलर की है उसके नीचे दो थालियां रखी हुई है जिसमें सामने किया हुआ है।

सामने हमें दो ए_सी दिख रहे हैं ट्यूब लाइट्स ऑन है सब बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं।

के नीचे हमें का दिख रही है जो कि शेप में दिख रही है उसी के नीचे फ्लोर है ब्राउन कलर का।

जैसा कि हम देख रहे हैं। दिन का समय है और ये गणेश चतुर्थी कि पूजा दिख रही है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं दिन का समय है धूप निकली हुई है सामने ही हम एक ईटो की बड़ा सा खंड जैसा घर दिख रहा है स्कूल दिख रहा है।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं इनका समय है हमें सामने सिडिया दिख रही है जो कि गोलाकार ले रही है।

है दृश्य किसी स्कूल या कॉलेज का लग रहा है जहां पे कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस की।

कुछ बच्चों ने शूज पहन रखे हैं कुछ ने जूतियां पहन रखी है पीछे ही हमें फ्लैग दिख रहे हैं लटके हुए।

उसी के पास हमें कई पेड़ पौधे दिख रहे हैं उसके पीछे एक ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है।

एक बिल्डिंग पे शीमला शीला लिखा हुआ है।

लोग अंदर खड़े हुए हैं एक आंटी हाथ बांध के बाहर खड़ी हुई है जिन्होंने पिंक कलर का स्टोन पहन रखा है।

और अपना काम कर रहे हैं टेबल पे है कुछ ग्रीन कलर के पेपर्स रखे हुए हैं और जो दो टेबल्स हैं वह एक दूसरे से जॉइंट हुई हुई --